ये मकान बनाने का लकड़ी का स्ट्रक्चर है ।

इसको हमारे तरफ हमारे एरिया में चहली बोलते हैं इसको।

बताइएगा इसके बारे में यहां पे काम करते --

घर की ढलाई के लिए सेंटरिंग रोड बाँधा जा रहा है इस को हम लोग भी हमारे एरिया में सेंटरिंग रोड ही बोलते है ।

यहां पे गार्डन पेड़ पौधे हरा भरा दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइट भी दिख रहा है और बादलों का बहुत सुंदर दृश्य यहां पे नजर आ रहा है।

ये टेक्सी स्टॉप दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारी टैक्सियाँ रखाई हुई है।

ये बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है खूब सारी दुकानें हैं जहां --

ये पहाड़ का दृश्य दिख रहा है मेरे को उसमें घर भी बना हुआ है ऊपर में।

हम लोग इसको लगा है लाउड स्पीकर कोंगा बोलते हैं और पीछे बिल्डिंग है।

ये बस का चित्र दिख रहा है।

और इस गे इस गेट को हम लोग अपने शब्द में दरवाजा बोलते है।